एमे पहिले जमाना जैसे उ जेके चिठी पत्र पहुंचाए के रहे ओमे पहुचाए वाला स्पीड पोस्ट होला पोस्ट होला चिट्ठी आपन जरुरी सुचना एमे डाल द और उ डाकिया आइ येमे से से उठा के लेके --

बाजार बाटे बछली मछली बेचाता अलग-अलग रोहू --